सामने खूबसूरत गेट गेट के अंदर मे हरे भरे पेड़ और गेट के सामने कुछ लाइट के खंबे लगे कुछ गाड़िया खड़ी है कुछ ऑटो खड़े है।

चोरा तरफ लोग ही लोग दिख रहे कुछ लोग कतार में खड़े कुछ साइड में खड़े है।

साथ ही साथ पानी का कलर बहुत ही आकर्षक और ऊपर सामने मे खूबसूरत यह बहुत बड़ा बोर्ड जिससे पानी क की पानी मे परछाई दिख रही है धन्यवाद।

खूबसूरती के साथ में पेश करते हुए यह गेट की सुंदरता को और चार चाँद लगा रही है और बहुत ही आकर्षक डिज़ाइन है।

यहाँ कुछ बुजुर्ग कुछ महिला कुछ बच्चे बैठे हुए कुछ अपना प्रौधान कर रहे है धन्यवाद।

आजू-बाजू मे हरे-भरे पेड़ हरे-भरे झाड हरे-भरे घास खूबसूरत घर यहाँ दिख रहे है धन्यवाद।

बहुत ही आकर्षक और बहुत ही खूबसूरत यह चबुतरा दिख रही है यह चबुतरे मे चारो तरफ गेट ही गेट दिख रहे है।

माना यह लोग किसी खास मिशन पे आपस से बात करते हुए दिख रहे है।

यहाँ बहुत सारे लोग दिख रहे है बहुत सारी खुली जगह दिख रही है छोटे-बड़े घर दिख रहे है बड़ी बिल्डिंगा दिख रही है।

और चारो तरफ लाइट से जगमगाता ये चम्मच दिख रहे।

सूरज की रोशनी से झग-मगा रहा सामने मे कुछ अह लगे हुए दिख रहे है धन्यवाद।

इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ने बहुत ही ऐसे--

खूबसूरत डिज़ाइन वाला आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट के अह गेट के सामने--